यह एक मॉल है मॉल में बच्चों के कपड़े टंगे हुए हैं।

कुछ कार्टून भी रखे हुए हैं जो की भूरे रंग के है।

यह सीमेंट के ईंटें का फर्श है यहां पे छह गाड़ियां पार्क की गई हैं गाड़ी के पीछे सफेद रंग की दीवार है दीवार के उस पार--

पंद्रह सोलह लड़कियां डांस कर रही हैं जिनके हाथों में पत्ते और फूल हैं।

कुछ लड़कियों ने गुलाबी रंग के फूल लिए और कुछ लड़कियों ने आसमानी रंग के--

टेंट लगा हुआ है जिसमें कि कुछ लोग बैठकर डांस को देख रहे हैं।

और साथ में बहुत सारे पेड़ हैं जो हरे रंग के हैं और उनकी पत्तियां हरि हरि है और सामने से घर दिखाई दे रहा है।

और एक काउंटर लगा है काउंटर के बाहर दो आदमी खड़े हैं काउंटर पर बहुत सारी बुक्स रखी हैं।

और का बोर्ड लगा हुआ है इसके नीचे तीन आदमी खड़े हैं और कुछ बाइक्स खड़ी हैं स्टोर के अंदर जाने के लिए--

और उसके गले में एक लाल रंग का कपड़ा बांधा गया है।

यह एक पांच मंजिला इमारत है इमारत--

हर एक नीम का पेड़ दिख रहा है उसकी पत्तियां हरी-हरी हैं आसमान दिख रहा है जो कि सफेद रंग का है।

जो कि हाथ रखे हुए खड़ा है आदमी ने ग्रे कलर की टी शर्ट पहन रखी है।

जो कि देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं।

यहां छठ पूजा हो रहा है यहां पे एक औरत दीप चला रही है।

और यहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं छठ पूजा के लिए--

जो कि हरे लाल पीले सफेद--

डांस क्लास में ग्यारह से बारह बच्चे हैं डांस क्लास की एक तरफ की दीवार हल्के गुलाबी रंग की--

सामने ही डिटन्जन पाउडर और आला वगैरह दिख--